यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के बीच में कुछ लोग बैठ के --

मल्टी बि जो बिल्डिंग है वो येल्लो ओर व्हाइट कलर की है कुछ खिड़किया भी दिख रही है।

बादल पर्पल ब्लैक और आसमानी कलर के दिख रहे हैं ।

उपर टी-शर्ट डला हुआ है वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ हैं ।

सफ़ेद कलर की इसमें बहुत सारी खिड़किया बनी हुई है इसमें खिड़किया बंद दिख रही हैं ।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ दिख रहा है टेबल के सामने ब्लैक कलर की चेयर रखी हुई है एक दरवाजा दिख रहा है सामने।

यहाँ एक कुहू भोजनालय है भोजनलाय के सामने कुछ पेड़ लगाये गए है भोजनालय मे --

प्राथना भाव में आनंदित करूँगा क्युकी मेरा भवन सब देशो के लोगो के लिए प्राथना कर करके कह लायेगा।

यह एक बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है तालाब में कुछ बगुले उड़ रहे हैं ।

और पीछे एक चेयर रखी है साइड में एक पलंग भी दिख रहा है रेड कलर की दीवाल दिख रही है दीवाल में लाइट भी लगे हैं ।

यहाँ पे पानी दिख रहा है यहाँ एक नाव दिख रही है।